यह एक भवन है यह भवन काफी बड़ा है।

बैठ के नाश्ता करते हैं।

और यहाँ बहुत सारे एरोप्लेन आती है।

यहाँ बहुत सारे अच्छी-अच्छी कपड़े मिलते हैं।